इनके साइडों मे भी कुछ-कुछ समान रखे हुए है साइकिल रखी हुई है और बहोत सारे समान रखा हुआ है।

और बहुत सारी लाइटिंग लगी हुई है हर कलर की लाइटिंग लगी है झूले के अंदर भी और बाहर साइड भी--

फूलों से और साइड मे पेड़ की लड़ी से--

और उसके ऊपर चल रहे हैं।

यहाँ पर मार्केट है। और काफी सारे फल फ्रूट के ठेले लगे हुए है यहाँ पर।

और कुछ लोग भी खड़े हुए है रोड से निकल--

साइड मे कुछ घर टाइप बना है पेड़ लगे हुए है।

यहाँ पर बहुत बड़ा समुद्र है। और समुद्र मे नांव भी है।

और साइडों मे बहुत बड़े-बड़े पेड़ भी लगे हुए है।

और भी काफी सारी सब्जिया रखी हुई है। ज़्यादकर टमाटर दिख रहे बहुत सारे टमाटर रखे हुए है यहाँ पर